यहाँ पर बहोत तीन-चार बच्चे हैं।

यहां पर रिंग लाइट है।

स्कूल का और --

फोटो है किसी पार्क का।

यह एक फोटो है मशीद का।

बहोत सारे पेड़-पौधे हैं।

डांस क्लास का और--

यह एक फोटो है किसी--

किसी फंक्शन का यह फोटो है।

पीछे के तरफ पहाड़ है जैसा है।

और गेट खुला हुआ है।

और बलून से डेकोरेशन है।

और दो टेंपो है।

और कपड़ों की कुछ मुर्तियां हैं।

ये एक फोटो है किसी रोड साइड का।

ये एक फोटो है किसी हॉल का और यहाँ पर --

दुकान में पंखे लगे हैं।

ये एक फोटो है।

बहुत सारे पैर पौधे हैं और--

कैंडल्स जल रहा--

बहुत सारी सिरियां हैं।

ये एक फोटो है रोड साइड का और --

हॉट ऐसी है।

लाल पट्टी से घेरा है।

और एक सिक्योरिटी --

और एक एसी लगा है।

यह एक फोटो है।

यहां पर बहुत सारे कार्ड्स लगे हैं।

ये एक फोटो है किसी शॉप का और रात के समय का यह फोटो है।

और तीन बाइक है ।

फोटो है किसी पार्क का--

और आगे कुछ लोग हैं।

ये एक फोटो है।

और यहां पर--

ये एक फोटो है किसी डांस स्टूडियो का--

और एक साउंड बॉक्स है।

किसी गंगा किनारे का और--

दिन के समय का यह फोटो है.

और बहुत सारे लाइट्स लगे हैं।

बहुत सारे लोगों का भीड़ है ।

पीछे की तरफ भी बड़े पेड़ हैं।

यह एक फोटो है किसी किले का--

एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और एक बच्चा झूला झूल रहा ह।

ये एक फोटो है किसी वाटर पार्क का--

बहुत सारे रखे हुए हैं।

गमले में कुछ पौधे लगाए हुए हैं।

ये एक क फोटो है किसी पेट्रोल पंप का--

पीले रंग का पेंट है दीवालों पर--

पीछे के तरफ बहुत सारा घर है।

ये एक फोटो है किसी कपड़े के दुकान का--

बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं।

ऊपर लाइट वाला झूमर दिखाई दे रहा है।

वाइट रंग का एक कार्ड है।

ये एक फोटो है किसी पत्थर का--

छोटे पत्थर का टुकड़े हैं।

किसी लौंड्री लैब के बाहर का--

ब्लू रंग का गेट है बड़ा सा--

मैरून कलर का घर है।

बैंक के बाहर का--

एक सिक्योरिटी गार्ड है।

ये एक फोटो है किसी ऑफिस का--

कुछ चेयर्स रखे हुए हैं।

ऑटो और बस लगे हुए हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

एक डस्टबिन है।

एक फोटो है किसी मॉल का--

बहुत सारे कपड़े हैं।

ब्लू कलर का लाइट लगा है।

बहुत सारे बेंच और टेबल है।

टेबल पर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं।

बहुत सारे बच्चे झूला झूल है।

बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

हरे रंग का पिलर है।

बहुत सारे लाइट्स लगे हैं।

रात के समय का ये फोटो है।